इस तस्वीर मैं एक अशोल स्तंभ और सामने की तरफ एक गेट नज़र आ रहा है।

निचे पार्किंग एरिया दिख रहा है जिसमे कई सारी कार और बाइक खड़ी हुई है बगल मैं कुछ पेड़ भी नज़र आ रहे है पीछे की तरफ एक पिले रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की काफी ज्यादा बड़ी है।

सामने के तरफ एक खम्बा लगा हुआ है। उसमे एक बॉक्स है। बगल में उसके एक काफी बड़ा हरे रंग पेड़ लगा हुआ है।